इस चित्र में एक ग्राउंड है।

और लोग बैठकर मेडिटेशन करते हैं इधर एक बैनर है।

और इधर थोड़े बेंचेस है वो बेंचेस पर हम लोग सोते है।

चित्र में एक ज्वैलरी शॉप है।

दो लैंड्स फोन्स है इसका कलर एक वाइट है एक ब्लैक है।

बैठने के लिए तीन बेंचेज हैं।

मस्जिद के सामने एक लड़का है।

मस्जिद के ऊपर एक लड़का खड़ा है।

एक लड़का स्कूटर में बैठ को है।

साईं कृष्णा है कोई इंग्लिश अक्षर में लिखो है।

गोल गोल है और इधर पहाड़ों में भी है और इधर काले पहाड़ा भी है।

झाड़ा है उधर एक नाले पे झाड़ है और छोटे फूलों का झाड़ है और लाइट है।

पानी में एक बच्चा खेलता है नदी के बाद जो है।

दो ब्ल्यू कलर पिलर्स है।

इधर दो व्हाइट चेयर्स हैं दो ब्लू चेयर्स है एक सिंगल सोफा चेयर है।

छोटे छोटे झाड़ और शोकेस भी है।

वो भी क्रिसमस का है इधर क्रिसमस ट्रीज है।

ये चित्र में एक चच है।

ये चित्र में एक बेकरी है।

एक से केक पीसस है।

उपकार को ऊपर ट्वेंटी फाइव ओर एटीन लिखो है।

और थोड़े लोग बात करते हैं और थोड़े लोग चलते हैं एक टी_वी है इधर लाइट्स है।

चित्र में एक मंदिर है ये मंदिर को आलंकार करे है।

नीचे ग्रीन कलर मैट है चकले का स्टैंड्स है बिल्डिंग है झाड़ा है।

वह एक जिम सेंटर है दो बड़े बॉल्स है एक रेड कलर में है एक ब्लू कलर में है।

उन लोगों में एक बस कंडक्टर है।

कंडक्टर चश्मा पहन को है।

बीच में से पानी पड़ता है।

चित्र में दो लोग है दोनों खड़े हैं एक लड़का है एक लड़की है और दोनों गाने गाते हैं।

कारपेट का कलर ग्रीन कलर में है।

ये चित्र में कार शोरूम का बिल्डिंग है।

एक लड़का फोन में बात करता है।

चित्र में एक चाय दुकान है।

एक आदमी चाय बनाता है।

एक आदमी चाय पिता है।

एक आदमी मास्क अलग बैठा है।

एक आदमी वेट को है।

हिंदी में ली अक्षर से लिखो है।

तरफ टू व्हीलर मल्टी ब्रांड सेल्स एंड सर्विस तेलुगू और इंग्लिश अक्षर में लिखो है।

ये बैंक में साइड वॉल फैंस है।

ये चित्र में स्टेशनरी शॉप है।

चेयर का कलर्स येलो और व्हाईट में हैं।

एक ए_सी है ओ ए_सी का कलर व्हाइट में है।

वो सोफे का कलर ब्लू कलर है।

चित्र में सिनेमा हॉल है।

के अंदर बल्ला के सीट्स हैं।

व्हाइट सीलिंग है चार व्हाइट लाइट्स है।